ये चित्र में अ इंडिया पोस्ट बैंक दिख रहा है और सामने इसके एक बोर्ड लगा हुआ है।

रंग-बिरंगे लाइट्स है नीले और गुलाबी और अ सफ़ेद लाल रंग की अंदर बहुत से लोग ठहरे हुए हैं और अंदर भी लाइट्स से सजावट अ की गई हुई है बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है।

थोडा सा पानी है और इसके अ-बाजु एक बड़ा पेड़ नजर आ रहा है और मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

अ इसके ऊपर घर बने हुए है जिसमें काफी अ अ खिड़कियाँ लगी हुई है।

चित्र में एक कार्यालय नजर आ रहा है और इसकी दीवारे लाल रंग की है सामने की और एक मूर्ति है और साइड में छोटी-सी पार्किंग है।

चित्र एक जिम की है और इसमें जिम करने का मशीना रखी हुई है और दीवार पे अ बड़े शीशे लगे हुए हैं और एक दरवाजा नजर आ रहा है।

और मिनारें बनी हुई हैं। अ नीचे अ उ कुछ तार दिख रहे हैं और बाजू इसके छोटे अ पेड़ लगे हुए हैं।